खंभा लगा हुआ है जब की बिजली के तार में जाने काफी हाई वोल्टेज की बिजली होती है इसमें --

जैसे कि हम देख पा रहे हैं दोस्तो यहां पर अ एक यह एक बस स्टैंड है जहां पर अ काफी सड़क खाली पडी हुई है बिल्कुल ही खाली --

जैसा की हम देख पा रहे है दोस्तों यह एक मछली की मार्किट है| काफी बड़ी मार्किट है| सामने की साइड पे --